यह एक योगा क्लास का दृश्य है।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

पीछे की ओ र दो तीन शटर भी दिखाई दे रही है जो कि बंद पड़ी है।

यह एक गैस गोदाम का दृश्य है जो की देखने में काफी बड़ा दिखाई दे रहा है।

यहां पे दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक पोस्टर लगा हुआ हैं जिसमें भगवान का चित्र छपा हुआ हैं।

बाहर में ठेले लगे हुए है।

पीछे की ओर पंखे पंखे की डाली रखी हुई कार्टून में नजर आ रही है।

इस दुकान में सभी समानो के लिए अलग अलग काउंटर बनाया गया है।

इस हॉल के साइड में दो गुलदस्ते रखे हुए हैं और ऊपर की ओर एक बैनर लगा हुआ है।